आ इस इमेज में एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा किला नजर आ रहा है। आ किले का कलर लाइट ब्राउन है साइड में बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ भी नजर आ रहें हैं।